बॉल वहाँ पे पड़ती है लेकिन वहाँ पे दिया नहीं कि बॉल पड़ा नहीं गया। रेड कलर की बॉल पड़ती है। कोई होगा वहाँ पे तो शायद एक दुकान है जिसमें कोई कुरकुरे इ सब मिलता है लेकिन हर एक चीज दस का बीस का मिलेगा पांच का कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे।

एक जो सेकेंड फ्लोर पे है जो --

टी चल रहे थे अब कुछ खाने के लिए लोग आये हैं। बफ सिस्टम टाइप का कुछ है यहाँ पे जो अपने खड़े-खड़े जो खाते हैं न बफ सिस्टम । इस शादी के त्यौहार में वही यहाँ पे अ बाल्टी उलटी सब कुछ किया। बाल्टी ही रख दिया गया।